इसमें मुझे एक शेर भी दिख रहा है। शेर येलो कलर का है।

शेर के मुझे वाइट दांत दिखाई दे रहे है। ऊपर की तरफ मुझे पर्दो का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बड़ा सा मैंदान दिखाई दे रहा है।

शॉप के अंदर क्रिश्मस का स्टेचू लगा हुआ हे। इसमें मुझे एक सैंटा दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जोकि ग्रीन कलर के हैं। ऊपर मुझे नीला आसमान दिखा --

ब्लैक पेंट पहना हुआ है और एक लड़की ने ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ है।

एक बैनर दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर का है।

इसमें मुझे एक लोटा भी दिखाई दे रहा है।

इसमे मुझे खंभे भी दिखाई दे रहे है। खंभों पर से तार निकलते हुए इसमें दिख रहे --

बैंक के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जोकि येल्लो कलर का है।

एक ऑटो रिक्शा ग्रीन कलर का है। इसमें मुझे कुछ बाइक्स भी दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ मुझे एक घर दिख रहा है और पेड़ भी दिख रहे हैं।

हमीरपुर लिखा हुआ हैं। इसमें मुझे पेड़ दिखाई दे रहे है।